एक आदमी सामने एक साइड पे जा रहा है जो काले रंग का कोट और है ना काले रंग का हेलमेट पहना हुआ है।

एक बड़ा सा गार्डन है जो हरे रंग ई की घास उगी हुई है। सोलर पैनल लगाया गया है।

अगल बगल खिड़कियाँ है बीच में एक गलदस्ता रखा गया है जो सफ़ेद रंग के ऊपर के साइड पे चारो तरफ पे एक खिलौना घूम रहा है जिससे ट्रेन कहते हैं ।

ऊपर के साइड पे एक रोशनदान बगल में एक पंख लगी हुई जो सफेद रंग की है। खिड़की लगी हुई है जो तीन कांच लगी हुई है ऊपर लाइट की आय। दिवाल का रंग हल्का रंग का पीला है।

ऊपर पोस्टर लगी हुई सामने से कुछ आदमी आ रहे हैं अगल-बगल पेड़ पौधे हैं हरी-भरी पत्तीयां हैं सफेद और नीले रंग की असमाने हैं।

इस बहोत सारे कपड़े रखे गए हैं पुतले रखे गए हैं जो सफेद रंग के कपड़े ऊपर लाइट जल रही है जो सफेद रंग की लाइट जल रही है। सामने दीवाल है जो पीले रंग का बड़े से पोस्टर लगे हुए हैं ऊपर के साइड का दीवाल का रंग काला है।